झाड़ भी बहोत दिख रहीं हैं और कोई पब्लिक तो यहां पे मुझे दिख ही रही है।

फूल हैं यहां पे बहोत सारे फूल दिख रहा है झाड़ है।

ये अ ट्रेन है और ट्रेन चल रही है दो पटरी है।